कुछ ठेले भी खड़े हुए हैं सामान बेचने वालों के सामने की तर।

और ब्राउन कलर की यहां पर शटर लगी हुई है साइड में एक गेट है वो भी बंद है।

और ऊपर इस पे मिट्टी के कबेलू हैं जो ब्राउन कलर के हैं और सामने लोहे का रेड कलर का--

यहां पर एक जिम है जो अंदर से वाइट कलर का है जिसमें बहुत सारी मशीनें --

कुछ ब्लू कलर और ब्लैक ग्रीन ब्राउन सभी कलर के सोफे सामने की तरफ।

यहां पर बहोत सारे पत्थर पड़े हुए है जिसमें कुछ पत्थर बड़े है और कुछ छोटे छोटे पत्थर है।

खिड़की है लकड़ी की जो ब्लू कलर की है और उपर एक नीला पोस्टर लगा--

वो प्लास्टिक की व्हाइट कलर की यहां पर चेयर भी रखी हुई है दोनों तरफ।

बहोत से पोस्टर भी यहां पर लगे हुए है कुछ व्हाइट टेबल्स रखे हुए है ऊपर के तरफ पूरी--

बहोत सारी बाइक यहां पर रोड पर ही खड़ी है साइड में और भी दुकाने है जो बंद है जिनके--

रेड कलर के गमले रखे हैं कुछ बाल्टी में लगे हैं कुछ--